यह एक अच्छा सा इ.डबल्यू.एस थ्री है और यह बहुत बड़ा और बहुत अच्छा भी दिखने में है और यह अच्छा के साथ-साथ बड़ा भी है ।

इसे देखने के लिए लोग बहुत दूर-दूर से आते है और यह एक अच्छा सा बस सब्सिस्टैंट टाइप का है और यहाँ बैठने की फैसिलिटी भी है यहाँ बहुत सारे ट्रक भी रखे गए है जो बहुत बड़े और अच्छे है यह कुर्सी बहुत ही अच्छी है ।